ए_सी लगा हुआ हम यहां देख सकते हैं।

और हम देख सकते हैं कि ये देखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

यहां पर लिखा हुआ है यहां पर बाहर लोगों की काफी भीड़ हम देख सकते हैं।

और एक कुर्सी पड़ी हुई है एक छोटा सा स्टूल देख सकते हैं जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है।

बेड जैसी यहां लगी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है और पहाड़ से पानी आ रहा है दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हम देख सकते हैं।

दूस हा दूसरे साइड पीले से टी_शर्ट में एक लड़का बैठा हुआ फोन चलाते हुए नजर आ रहा है।

और जो ट्राफियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ क्रिकेट बैट यहां पर पड़े हुए हैं।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

जिसमें बेड के ऊपर एक रजाई पड़ी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर एक शादी चल रही है।

पॉपकॉर्न दलिया वगैरह के पैकेट पड़े हुए हैं।

और कुछ छोटी कुछ बड़े आकर की गोभी यहां पर लगी हुई हम देख सकते हैं।

यहाँ नीले रंग की नाव यहाँ पर खड़ी हुए है।

यहां हम देख सकते हैं की यहां पर सफेद रंग की बड़े बड़े टेबल और कुर्सियां पड़ी हुई हैं और --